और यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई है उसके ऊपर झालर भी टंगी हुई है और उधर पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी टिकी हुई है।

यहाँ पर छोटी सी एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है जिसके बाजु से जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है।

एक का कलर सफेद है एक का कलर ब्राउन है और एक रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है | यहाँ पर बहुत सुंदर कपड़े टंगे हुए हैं।